हॉल में बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं। मेज पड़ी हुई है।

एक नदी है नदी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है।